रा लाल कलर के है आस पास कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो काफी संख्या में है काफी बड़े हैं।

बल्टी है जो कौफी स्टेडियम के बाहर बनी हुई है सपास काफी संख्या में पेड़ पौधे है।

एक व्यक्ति कुछ रात में कपड़ा लिए हुए उसको देख रहा है।

आस पास कुछ मकान बने हुए हैं मंदिर के बाहर कुछ लाइटे जल रही हैं।

उसके बदल से एक साइकिल रखी हु--

जो दूध रतन के स्वीट फास्टफूड के नाम से है।

यह एक नर्सरी है जिसमें कुछ--

एक ऊपर एक रखे हुए हैं जिसमें एक छह लेयर बने हुए हैं नीचे वाली लेयर सबसे बड़ी है फिर उसके ऊपर --

इनसे छे लेयर बनाई गयी है दीवार का रंग है वह पिला रंग है ग्लासों के पीछे कुछ सामान रखा हुआ है।

स्टेच्यू रखा हुआ है वहीं पास में एक खिड़की है उसमें लाइटें जल रही है।

स्टैच्यू के बाहर एक लोहे का गेट लगा हुआ है जिसके दोनों तरफ--

है एक जंगल है जिसके बीचों बीच एक नदी बह रही है आसपास काफी बड़ी संख्या में पेड़ पौधे हैं।

अ कुछ बेल्टें बने हुई हैं उनके बाहर कुछ--

काफी संख्या में मोटरसाइकिल कारें रखी हुई हैं।

एक अच्छा फ्लावर रखे हुए हैं जो काफी सजा पास ही में आर्टिफिशियल बुलेट लगी हुई है।

यह एक पार्क है जिसमें काफी संख्या में छोटी छोटी घास खड़ी हुई है जो काफी दूर तक--

वही एक दीवाल के बगल से कुछ रंग-बिरंगे पेड़--

आसपास कुछ बसे जो काफी संख्या में है दीवार पर ए सी लगा हुआ है कुछ लाइटे जल रही है।

यह एक स सड़क है जिसमें पानी भरा हुआ जिसमें काफी संख्या में गड्ढे हैं।

आसपास कुछ कुर्सियां रखी हुई है। कुछ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

ये है एक स्टेज है जिसमें कुछ लड़कियां नृत्य कर रही हैं।

यह एक हॉल है जिसके अंदर कुछ मशीनें रखी हुई है जो एक अलमारी के अंदर है।